हो या ड्राइवर हो।

यह सड़क काफी व्यस्ततम सड़क दिख रही है।

यह एसी वॉल्वो बस है ।

एगो बालटीन भी रखी हुई है इस्टम --

कोई ऐसी जगह लग रही है जहां फूल बिकता है ।

सभी लोग फ़ोटो खिचवा रहे हैं।

व्यायाम शरीर के लिए होत अच्छा होता है।